ये इस तस्वीर में एक गंदी सी रोड देखने को मिल पा रही है।

और साइड साइड में बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल पा रही है।

पास में बहुत सारी सामान भी रखा हुआ दिखाई दे पा रही है।

और ये ये किनारे में बहुत सारी छोटी छोटी घर और बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिल पा रहा है।

मुझे इस तस्वीर में कुछ आदमी लोग बैठा हुआ दिखाई दे पा रही है।

और दूसरे साइड में भी बहुत सारी पेड़ भी देखने को मिल पा रहा है।

ये शू भी येलो कलर की पहन कर दिखाई दे रही है।

यहां हमें कुछ सीढ़ी भी दिखाई दे पा रही है।

और फिर दूसरे साइड मे भी व्हाइट कलर के टीना से--

ग्रास भी देखने को मिल पा रही है।

जिसमें बहुत सारे खाने की समान भी रखा हुआ दिखाई दे पा रहा है।

दूसरे साइड में भी एक पानी भी देखने मिल पा रहे हैं।

और फिर ऊपर में खिड़की भी एक देखाना को मिल पा रही है।

और कुछ आदमी लोग चलते हुए भी देखने को मिल पा रही है।

और फिर यहां में दो आदमी भी बैठाया हुआ दिखाई दे पा रही है।